ये एक होटल है होटल में दो गेट है दोनों गेट के साइड में दो पोस्टर लगे हुए है।

कुछ लोग पानी के अंदर भी खड़े हुए है और कुछ लोग बाहर खड़े हुए है यहाँ दूर-दूर पड़े हरे कलर की घास नज़र आ रही है और आसमान भी नजर आ रहा है जिन कई कलियों मे है ।

ग्रीन है कुछ का वाइट है कुछ का ग्रे कलर है एक ब्लैक बोर्ड वाइट कलर का दिखाई दे रहा है और एक ब्लैक कलर का--

आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है।

ये एक फ्रीजर है बड़ा सा जिसमे दो केक रखे हुए है एक केक का कलर पिंक है उसमे वाइट कलर से डेकोरेट किया गया है दूसरे केक का कलर येल्लो हैं।

मुझे एक खेलने का प्लेग्राउंड नजर आ रहा हैं उसे प्ले ग्राउंड पे स्लाइड लगी हुई हैं जो ब्लू कलर की है एक रेड कलर की हैं एक ब्लू कलर की हैं।